यहाँ प सूर्य नमस्कार भी हो रहा है सामने की तरफ पेड़ पोधे लगे हुए है।

सामने की तरफ एक श्री राम चंद्र चंद्रवंशी लिखा हुआ है सामने की तरफ पार्किंग एरिया है जिसमें बहुत सारे बाइक स्कूटी खड़ी हुई है सामने पेड़ लगा है।

ये एक डी.जे. हाउस है सामने की तरफ इसमें फंक्शन चल रहा है इसमें चारों तरफ लाइट लगे हुए है इसमे रेड कलर के ब्लू कलर के येलो कलर के परदे और लाइट लगे हुए है।

यह एक पार्क हैसामने की तरफ बड़ा सा पार्क नजर अ रहा है जिस मे चबूतरा बना हुआ है चबूतर में एक व्यक्ति की तस्वीर बनी हुई है ये एक मूर्ति है समाने मूर्ति में एक टकला है।

ये एक पहाड़ की चोटी है सामने की तरफ एक बड़ा सा पहाड़ है पहाड़ के ऊपर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए है।

एक मल्टीप्लेक्स है सामने की तरफ उसमे टॉकीज़ है इसमें सामने की तरफ नीचे बोर्ड लगा हुआ है जिसमे बॉक्स ऑफिस लिखा हुआ हैं।

इसमें ब्लेक कलर की व के वाहन खड़े हुवे है वाईट अलर के पान कार्ड ओ सामने एक बडी बैंक नजर आ रही है इसमें चारो तरफ ग्राउंड बना हुवा है इसमें बड़े बड़े पेड़ छोटे छोटे पेड़ लगे हुवे हैं।

चट्टान के ऊपर बड़े बड़े पेड़ पोधे लग चुक है जो हरे भरे हो रहे है नील की पतिया हरे कलर की है समाने बड़ा सा ग्राउंड है ऊपर आसमान है।

यह एक सड़क है जो जंगलो के बीचो बीच बनी हुई है ये सड़क हाई वे नूमा बनी हुई है।

कार्यालय बना हुआ है सामने की तरफ एक बड़ा सा कार्यालय बना हुआ है इस पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें समारलय जामताड़ा लिखा हुआ है।

यह एक प्लेटफ्रॉम है सामने की तरफ यह रेलवे प्लेटफ्रॉम नजर आ रहा है यहा लम्बी लम्बी दो पटरियां नजर आ रहा है साईड ब्लाकस लगे हुए है।

पेट्रोल पम्प है सामने की तरफ एक बड़ा सा पेट्रोल पम्प नजर आ रहा है पेट्रोल की मशीन है उसके ऊपर टिन शेड लगा हुआ है।